चाय सब मोह माया है। लिखा हुआ है मतलब हम बोल नही रहें हैं। तो यहाँ पे चाय रखा हुआ है दो कप ।

और काफी बड़ा जगह है और पेड़ भी है साइड -साइड में और काफी बड़ा ग्राउंड भी है और शीशा से बनाया गया है।

डब्बा टाइप में और यहाँ पे दुकानें है। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं। कुछ खरीदने आये हैं।

लाइट दिया गया है । खिड़की दिया गया है ।

कांच वगैरह से डेकोरेट किया गया है।

और काफी सूंदर लग रहा है गेट का डिज़ाइन ।

बालकनी दिया हुआ है। ब्लू कलर का बड़ा सा गेट किया गया है।